ब्राउन कलर का गेट है व्हाइट दीवार है लोहे के दो खंबे बने हुए हैं दो बाइक खड़ी है।

और यहा पे काम चल रहा है कुछ लोग बैठे हुए है बच्चे यहां पे घूम रहे हैं।

एह टी_वी चल रही है एक लैपटॉप रखा हुआ है।

और पेप्सी की बोतल रखी हुई है एक प्लास्टिक की कुर्सी है छत में लाइटे लगी हुई है बहोत सारे वायर --

पहाड़ों के बीच से पानी निकल रहा है बहुत ही सुंदर नजारा है आसपास पौधे हैं बड़े बड़े पेड़ हैं।

फूल लगे हुए है और यहां पे एक गद्दी बिछी हुई है और आस पास लोग यहां पे बैठे हुए है।

बोतल है उम्म यहां पे छोटे छोटे डिब्बे हैं।

छत पे लाइटिंग लगी हुई है वाइट कलर की टाइल्स है।

पीछे पहाड़ बना हुआ है यहां पे छोटे छोटे गमले हैं।

फिश बनी हुई है छोटे छोटे यहां पे अह मूर्तियां रखी हुई हैं सामने स्टेज बना है।

रोड है सामने स्टेज बना हुआ है दिल्ली पब्लिक स्कूल रामनगर --